ऐसा लग रहा है कि यह कोई रूम के अंदर का दृश्य है।

यहाँ पर बॉल रखे हुए हैं। बेडमिंटन भी रखा हुआ है और बोहोत सारे सामान यहाँ पर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस दृश्य में हम देख रहे हैं एक नहर है।

इस दृश्य में एक मैंदान जैसा नजर आ रहा है। मैंदान में नया कुर्सी रखा हुआ है। कुर्सी पर पेंट ऊं नया लग रहा है।

इस दृश्य में हम एक ई-रिक्शा देख रहें हैं। ई-रिक्शा बिल्कुल नया दिखाई दे रहा है। इसके बगल मे एक और नया ई-रिक्शा नज़र आ रहा है।

तालाब मे कई छोटे-छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं। फूल के ऊपर एक लड़का हाथों को फैलाए हुए नजर आ रहा हैं।

इसमें एक बड़ा सा केले का पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

सामने एक बड़ा सा मैंदान दिखाई दे रहा है। मैंदान में हरी-हरी घास है और इसके चारों तरफ छोटे-छोटे गमलो में पौधे लगे हैं।

इसके पीछे दो हैं और बिजली का खंबा है जिनमें तार लगा हुआ है।

कुर्सियों पर बैठे हुए नजर आ रहे हें। बगल में एक खिड़की है और पर्दा भी लगाया गया है।

इस दृश्य में हम देख रहे हैं एक पानी का नदी है। नदी के किनारे पर दो-तीन लकड़ियों का नाव दिखाई दे रहा है।

इसमें हम कमरे के छत को बनते हुए देख रहें हैं। दो मजदूर छत में काम करते हुए दिखाई दे रहें हैं।

ये अगल-बगल बहुत सारे पानी बिखरे पड़े हैं। दीवारों पर भी पानी के छींटे नजर आ रहे हैं। ये एक पाइप है। बगल में खिड़की दिखाई दे रही है।

इसके ऊपर एक वृक्ष है और कहीं छोटे-छोटे बल्ब भी जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इसके अंदर भी हैं।